लोग पैसे उठाने के लिए आते हैं ।

खड़ा कर रहा है। पैसे उठाने के लिए आया हुआ है।

बहोत सारे हिरन हैं।

यहाँ पे बोहत सारे डॉक्टर --

यहाँ पे बहोत सारे लोग --

यहाँ पे बड़े-बड़े गमले में --

यहाँ पे बोहोत सारे सामान रखे हुए हैं। बगल में --

बहार में बोहोत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। बोहोत सारे लोग यहाँ पे आये हुए हैं पैसे उठाने के लिए।

यहाँ पे कुछ लोग नहाने के लिए आए हुए हैं ।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

यहाँ पे बोहोत सारे --

यहाँ पे एक बड़ा सा मेन गेट लगा हुआ है।